ये एक हाईवे हाईवे रोड दिखाई दे रहा है। इस रोड में काफी सारी चीज़े दिखाई दे रही हैं और पेड़-पौधे भी लगए गए हैं।

ये एक मंदिर के बाहर का मेला दिखाई दे रहा है। इस मेले में काफी सारे लोग इखट्टा हुए हैं।